इस इमेज मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है उसके साम वह सारा समान रखा हुआ है और एक लाइन मे किताबे रखी हुई है।

वो नीचे बहुत सारा सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

बहोत सारी कार रखी हुई दिखाई दे रही है एक स्कूटी है और हमम स्कूटीया दिखाई दे रही है।

इस इमेज मे मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है रोड पर बहुत सारे मोटर साईकले दिखाई दे रही है एक पट्टी सी बनी हुई दिखाई दे रही है। ऊपर लैम्प लगे हुए है लेम्पो मे बल्ब लगे हुए दिखाई दे रहे।

और एका और बहुत सारी म म केरा खड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है पेड़ के बाजू मे जो कि म पीछे बैग टांगे हुए है।